यह एक मिनी मॉल है जिसमें हम अपने घर का सामान --

खुशी को मनाना चाहिए और केक काटकर अपनी ख़ुशी मनानी चाहिए इसीलिए हमें इससे अच्छा लगता है इसीलिए।

ईरिक्शा वगैरा मिलते है। यहाँ पर हम अपने बच्चो को मिनी सा मिनी साइकिल या अपने बच्चो को साइकिल दिला सकते है जिससे कि हमारे बच्चे खुश हो जाते है साइकिलों को देख कर।